और बहोत सारे लोग घास पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और ग्राउंड में बहोत सी घास लगी हुई दिखाई दे रही है।

और कुछ पेड़ टूटे हुए भी डले दिख रहे हैं नीचे मिट्टी भी दिखा रही है।

पीछे कुछ मैदान में घास भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

जिसमें एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और पीछे एक लाइट भी जलती हुई दिखाई दे रही है।

ए फोटो एक कार सर्विस सेंटर की फोटो है जिसमें बहोत सारी कार रखी दिखाई दे रही हैं और--